हेलो भाई लोग यह किराना दुकान है जहाँ पर हर तरह के समान मिलती है जैसे आलू प्याज और बिस्किुट है कुरकुरे है नीमकी है दालमोट है आम का अचार भी होगा बिस्किुट है तेल है।

हेलो भाई यह मोल है यह मोल में अच्छे-अच्छे जूते अच्छे-अच्छे कपड़े अच्छे-अच्छे पेंट शर्ट और सब कुछ मिलता है यहाँ पर आए और सब अपने-अपने जूते कपड़े और पैंट वेंट लेकर जाए। थैंक यू धन्य --